और चेयर भी रखा हुआ है।

और बाहर एक जनरेटर भी रखा हुआ है।

और ऊपर बड़े-बड़े गाँछ हैं।

यहां पर एक बड़ा सा मैदान है।

एटीएम है जिसके बाहर --

ट्रैक्टर खेती वाले ट्रैक्टर है|

सब योगा मैट लगाकर योगा कर रहे हैं।

इसके ऊपर से ट्रेन पार हो रहा है।